कॉफी डिज़ाइन इसके ऊपर बना है एक मूर्ति खड़ी है हाथ में त्रिशूल हे।

ऊपर की ओर लकड़िया बंधी हुई है आसमान दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं हरे रंग के|

यह चित्र एक मंदिर का है जो सफेद रंग से पूता है इसके ऊपर मीनाकारी का डिज़ाइन किया गया है।

चित्र एक मोहल्ले का दिख रहा है जहां एक लड़का साइकिल पे खड़ा है इसके लाल रंग का कपड़ा डला है।

यह चित्र एक जगह का दिख रहा है जहाँ एक मूर्ति है आस-पास एक खंभा बना हुआ है नारंगी रंग का काले रंग का पत्थर है।

आसमान दिख रहा है खंभा दिख रहा है तार दिख रहे है और एक पेड़ दिख रहा है हरे रंग का--

टीन का शैड दिख रहा है आसमान में बादल दिखमें।

यह चित्र एक रोड का दिख रहा है। जहाँ एक ऑटो जा रहा है। एक बाइक जा रही है।

एक मूर्ति दिख रही है काले रंग की कुछ सीढ़ियां दिख रही है आस-पास नारंगी रंग से बोडर बनी हुई --

की बाउंड्री लाल रंग से पुती है आसमान दिख रहा है काफी सारे पेड़ है चिड़िया है पानी भरा हुआ है।